मेरे सामने एक रेलवे स्टेशन है जो राजल देसन में है यहां पर एक ट्रेन भी खड़ी है जो काफी लंबी है यहां पे बिल्कुल भीड़ नी है।

ये किसी झील के पास खड़े हैं झील का पानी काफी अच्छा दिख रहा है झील के पास काफी पेड़ भी हैं और मौसम काफी धूप भरा हो रखा है।

लगता है यहां बच्चों के खेलने के आइटम मिलते हैं जैसे बेट हॉकी क्रिकेट बॉल बैडमिंटन काफी टॉयज पड़े हैं यहां पे।

काफी लोग खड़े हैं ट्रेन के बाहर मेरे सामने दो लड़कियां भी है जो दो बैग लेके जा रही है लगता है ये कहीं घूमने के लिए निकल रही है दो बड़े बड़े बैग लेके --

यहां पे काफी सारे सोफे भी लगे हुए हैं सोफे के आगे टेबल्स भी पड़ी है यहां एक पिक्चर भी है जो दीवार पे टंगी हुई है।

मेरे सामने एक घर है जो दिखने में काफी पुराना और खटारा लग रहा है इसके बाहर एक गाड़ी भी खड़ी है जो भी पुरानी और खटारी सी लग रही है।

मेरे सामने काफी लोग खड़ा है लगता है यहां कोई मेला या कोई प्रोग्राम होने वाला है काफी लोग इकट्ठे हो रखे हैं तैयार हो के काफी बुजुर्ग--

बिल्डिंग के बाहर काफी अच्छी सड़क बनी हुई है बिल्डिंग के बाहर तीन गाड़ियां भी खड़ी है जिनका कलर ब्लैक व्हाइट ब्लू है।

मेरे सामने एक मंदिर है जो काफी ओल्ड स्टाइल का लगा रहा है मंदिर के बाहर काफी साफ सफाई हो रखी है टाइल एकदम चमक रही है।

खंभों पे लाइट भी जल रही है लोग बिल्कुल इकट्ठे हो रखे हैं यहां पे।

मेरे सामने एक बिल्डिंग है जो दिखने में काफी अच्छी लग रही है कांच की बिल्डिंग है बाहर से दिखने में काफी अच्छी लग रही है।

मेरे सामने एक एयरप्लेन है लगता है यह लैंडिंग करने वाली है एरोप्लेन काफी बड़ी लग रही है लगता है एयरपोर्ट्स पे है।

सामान पड़े हैं काफी यूनिक तरह की मशीनें पड़ी हैं रॉड पड़ी है लगता है यहां पे काफी लोग जिम करने आते हैं।

काफी बड़ा कचरा का कूड़ा भी है लग रहा है जैसे कोई अभी अभी बारिश हुई हो काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे है मेरको।

यह हार्ट सेंटर हॉस्पिटल है दिखने में काफी अच्छा है बाहर एक टैक्सी और बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है।